इस तस्वीर में हमें उद्यान नजर आ रहा है जहाँ पर काफी सारी घास उगी हुई है वह अलग-अलग रंग के पुष्पों के पौधे व अलग-अलग प्रकार के वृक्ष मौजूद है।